इस चित्र में हमे दिखाई दे रहा है एक स्टेजनरी की दूकान जहा बहुत सारी किताबे रखी हुई है यहा पर पेंसिल पेन वगेरा भी दिखाई दे रहे है कॉपी रखी है बुक्स रखी है ओरेंज कलर की सेल्फ बने हुए है यहा पर हमें एक आदमी भी दिखाई दे रहा है जो बुक खरीदने आया है एक गडी नज़र आ रही है।

नीले रंग का है पेट्रोल पम्प इंडियन ऑइल वाले का है।

यहाँ पर हमे एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है और एक टँकर भी खड़ा हुआ है ।

यहाँ पर हमे एक लोहे की जाली दिखाई दे रही है।

एक स्ट्रेट लाइट की रोशनी नजर आ रही है।

इसमे हमे सामने दीवार पर दो बड़ी बड़ी खिड़कियां नजर आ रही है।

इसने सफेद रंग की पुताई है यहा दो पलंग रखे हुए है एक पलंग पर कलम के फूलो की चादर बिछि हुई है जो की--

एक खाली प्लाट भी नजर आ रहा है जिसमे पानी भरने से दलदल बन गई है।

ये एक कमरा है जो जिसमें टाइल्स लगा हुआ है।

ओर काली टोपी लगाई हुई है यहां हमें टेबल कुर्सी भी नजर आ रही है।

पीछे हमे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है जिसमे एक आदमी एक औरत --

जिसपर एक बैनर लगा है बैनर पर लिखा हुआ है।

यहाँ पर होटल लॉन्ड्री गेस्ट लॉन्ड्री --

पीछे हमे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे है।

हमे यहाँ दो टंकी भी दिखाई दे रही है एक नीली और एक सफेद।

और उनके पीछे दो बड़े बड़े फव्वारे भी दिखाई दे रहे है ।

जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि एक पिंजरे में शेर बंद है।

जो बड़े बड़े मकान है जहा पर सफ़ेद गुलाबी रंग की पुताई के मकान देखने को मिल रहे है।

इस चित्र में हमें दिखाई दे रही है एक लाइब्रेरी --

जिसपर मेहराबे बनी है ये सफेद रंग का पुत्ता हुआ है ।

भवन के बहार सीमेंट के गमले बनाये गये है जिसमे पेड़ लगे हुए है।

ये स्कूल मेहरून कलर का पुता हुआ है।

बिल्डिंग के बहार हरे रंग की ग्राउंड बना कर घास उगी हुई है।

इस चित्र में हमे दिखाई दे रहा है एक --

हॉस्टल के बाहर दीवार बनी हुई है जिसपे लोहे की जाली लगी है।

जिसके बहार रंग बिरंगे पिलर बने हुए है उन पिलर में --

पार्क में बच्चो के खेलने के लिए फिसल पट्टी झूले वगेरह बनाये गये है।

जो की अलग रंग है एक नीले रंग का --

इस चित्र में हमे दिखाई दे रहा है एक खुला जंगल जहा बहोत बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे है पीछे हमे एक तालाब दिखाई दे रहा है तालाब के पीछे हमे बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा है जो कि हरे रंग का है आसमान नीला रंग का है और आसमान में बहोत सारे बादल छाए हुए है।

स्कूल का नाम है गुरुकुल ग्लोबल स्कूल --

टी शर्ट उनकी हलकी लाइनिंग वाली है और पेंट ब्लैक है।

यहां पर हमें एक मूर्ति भी दिखाई दे रही है जो कि गांधी जी की है।

इस चित्र में हमे दिखाई दे रहा है एक पार्क जहा बहोत बड़े बड़े पथर नज़र आ रहे है पार्क की जमीन को टाइल्स से बनाया गया है पार्क के किनारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है सामने हमे सूरज दिखाई दे रहा है ये शाम का समय है।

पार्क के सामने बोहोत सारे घर बने हुए है।

स्विमिंग पूल के पास एक छोटा सा गार्डन जैसा बनाया गया है जिसमे एक झोपड़ी बनाई है।

लडकियों ने नीले और लाल रंग की चेक्स वाली जेकिट पहनी हुई है।

पीछे हमे बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे है।